और एक घर में एक लड़का है जो कि कुछ काम कर रहा है दो व्यक्ति भी दिखाए गए हैं।

इस दृश्य में कुछ लोग काम करते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी खड़ा है जो कि एक बैटिंग जैसा कुछ पकड़ा हुआ है।

इसकी लाइनिंग है यहां पे सफेद रंग की और शीशे लगे हुए हैं गेट पर--

हरा भरा यहा पे पौधा लगा हुआ है बहोत बड़ा पेड़ भी दिखाया गया है एक चबूतरा बना हुआ है खाली रोड जा रही है एक बच्चा दिखाया गया है।

एक लाइट है कुस यहां पे खिलौने हैं गुड़िया है गुड्डा है बहोत सारे टेडी बियर भी रखे हुए है।

और उसके बगल में एक खाली घर भी बना हुआ है।

पहाड़ के बीच में नदी बह रही है पहाड़ के तीनों औरों से नदी बहके नीचे जा रही है।

ये एक घर है जहां पे एक पार्टी जैसा हो रहा है।

जिसने ब्लैक कलर का ट्राउजर ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

उसके बीचो बीच पानी है हद बगल में उसके कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं हरे-भरे।

लड्डू रखे हुए हैं दो आदमी खड़े हैं आपस में बात करते हुए।